और एक वक्ति फोन पे बात कर रहे है कार खड़ी है स्कूटी खड़ी है बाइक खड़ी हुई है और --

और बेरिकेट लगे हुये हैं बड़े - बड़े लगे हुए --

यहाँ पे पिआज आलो की दुकान है लहसन वगेरा की जो की ओपन करके रखे हुए है इन्होने --

और आसमान दिख रहा हैं।

यहाँ पे पार्क है पार्क में मूर्ति वगैरा बनी हुई हैं।

यहाँ पे ग्राउंड हैं ।

यहाँ पे पूरा पहाड़ी वाला एरिया दिख रहा हैं पहाडी में से --

एक कार आ रही है एक फ्लोरे गाड़ी में डीजल भरा रहा हैं।

सीढ़ी भी है मंच पे काफ़ी डेकोरेट किया हुआ है उपर सोफा भी रखा हुआ है कुछ लोग भी दिख रहे है उनके पेड़ दिख रहे है उपर --

कारपेट बिछी हुई हैं इधर ग्रीन कलर की साइड में पेड़ दिख रहा हैं पेड़ की --

और गैरेज लग रहा है कार के सर्विसिंग हो रही है और भी आगे दो एक कार खड़ी हुई है।

कांच वांच का दिख रहा है ऑरेंज ब्लू पुता हुआ है नीचे पेंट पुता हुआ है।